libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि libreoffice base क्या है
base का उपयोग करने के लिए जरूरी चीजें
आप base में क्या कर सकते हैं
relational database की मूल बातें नया database बनाना table बनाना
libreoffice base libreoffice suite के database का प्रारंभिक भाग है
base microsoft access के समतुल्य है
base free और open source सॉफ्टवेयर है उपयोग और वितरण के लिए मुफ्त है
base का उपयोग करने के लिए आवश्यक चीजों को देखते हैं
microsoft windows के लिए system आवश्यकताएँ निम्न हैं
microsoft windows service pack 4 और उच्च xp एक्सपी vista vista या windows 7; pentiumcompatible pc 15 gb तक उपलब्ध hard disk space
उबंटु लिनक्स के लिए system आवश्यकताएँ निम्न हैं
लिनक्स kernel version linux kernel version 2618 या उच्च ; pentium compatibleपीसी pentiumcompatible pc
विंडोज और लिनक्स दोनों के संस्थापन के लिए हमें 256 mb ram recommended 512 mb की आवश्यकता है
पूर्ण सिस्टम आवश्यकताओं के लिए लिबरऑफिस बेवसाइट पर जाएँ
आपको java runtime environment संस्थापित करने की आवश्यकता भी है जिसे आप निम्न link से download कर सकते हैं
केन्द्र में free java download नामक लाल button पर click करें
एक बार file downloaded हो जाय इस पर double click करें और संस्थापन के लिए निर्देशों का अनुकरण करें
चलिए libreoffice base के संस्थापन को देखते हैं
यदि आपने पूर्ण संस्थापन option के साथ libreoffice suite पहले से ही संस्थापित किया हुआ है
तो आप अपनी screen की बायीं ओर सबसे नीचे start menu पर क्लिक करके libreoffice base access कर सकते हैं
all programs पर click करें और फिर libreoffice suite पर click करें
यदि आपने libreoffice suite संस्थापित नहीं किया है
आप official बेवसाइट पर जाकर और download libreoffice नामक green क्षेत्र पर क्लिक करके base संस्थापित कर सकते हैं
विस्तृत निर्देश libreoffice suite के पहले tutorial में उपलब्ध हैं
याद रखें संस्थापित करते समय base को संस्थापित करने के लिए complete option का उपयोग करें
ठीक है अब अगले विषय पर चलते हैं
आप libreoffice base में क्या कर सकते हैं
base में आप सुनियोजित data संचित कर सकते हैं
data entries क्रियान्वित कर सकते हैं और forms का उपयोग करके data देख सकते हैं
queries का उपयोग करके जानकारी पुनः प्राप्त कर सकते हैं और
printer के लिए तैयार अच्छी reports बना सकते हैं
base आपको databases के प्रबंधन में मदद करता है
जैसा कि आप जानते होंगे database data forms queries और reports का समूह है
उदाहरणस्वरूप base का उपयोग ग्राहक की जानकारी के databases का प्रबंधन करने के लिए किया जा सकता है
सेल्स ऑर्डर्स और चालान को ट्रैक करना छात्रों की श्रेणी के डेटाबेसेस का अनुरक्षण करना या लाइब्रेरी के डेटाबेस को बनाना
चलिए अब डेटाबेसेस के कुछ मूलतत्वों के बारे में सीखते हैं
database tables में सुनियोजित और संचित data है
tables rows और columns में संचित data के अलगअलग टुकड़े हैं
इस तरह के database को relational database भी कहते हैं जहाँ columns का उपयोग करके tables का संबंध एकदूसरे से होता है
library के लिए simple database का उपयोग करें
library पुस्तकों का संग्रह हो सकता है
और पुस्तकें library के सदस्यों को जारी की जा सकती हैं
पुस्तक में शीर्षक रचनाकार प्रकाशक प्रकाशन का वर्ष और कीमत हो सकती है
इन्हें अभिलक्षण या विशेषता कहते हैं
उसी तरह library सदस्य का name phone number और पता होता है
और library केवल इसके सदस्यों को ही पुस्तकें जारी करती हैं
अब देखते हैं कि हम rows और columns के व्यक्तिगत tables के रूप में इस data को कैसे संचित कर सकते हैं
प्रत्येक पुस्तक के बारे में जानकारी books table में संचित कर सकते हैं
इसकी विशेषताएँ columns बनने के साथbook title author publisher year of publication और price
प्रत्येक पुस्तक को भिन्न करने के लिए हम bookid नामक unique identifier column भी जोड़ते हैं
इस तरह हमारे पास उसी शीर्षक की दो पूरी तरह से अलग पुस्तकें हो सकती हैं
उसी तरह members table में columns हो सकते हैं जैसे कि name और phone
और विशिष्ट पहचान या प्रत्येक सदस्य को भिन्न करने के लिए member id
और हम booksissued नामक तीसरे table में सदस्यों को जारी की गयी पुस्तकों को track पता लगाना कर सकते हैं
यह table पता लगायेगाbook issued the member date of issue date of return actual date of return whether checked in or not
इनमें data जोड़ने के लिए हम इन tables में relationships संबंध स्थापित कर सकते हैं
अब यह हमें relational databases का प्रबंध करने में मदद करता है
relational databases पर advanced विषयों के लिए spokentutorial org पर जाकर हमारे अन्य tutorials का अनुकरण करें
ठीक है अब library नामक अपने पहले base के database के साथ शुरूआत करते हैं
नया database बनाने के लिए पहले base program base program को open करें
फिर screen के सबसे नीचे तल पर windows के start menu पर click करें फिर all programs पर click करें फिर libreoffice suite और libreoffice base पर click करें
database wizard नामक एक popअप window opens होती है
नया डेटाबेस बनाने के लिए next बटन पर क्लिक करें
निम्न विंडो में finish बटन पर क्लिक करें
यह save as विंडो ओपन करता है
क्योंकि हम लाइब्रेरी डेटाबेस बना रहे हैं हम फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में library टाइप करेंगे
और फिर save button पर click करें
अब हम अंदर हैं
आगे data को संचित करने के लिए tables बनाएँ
नया table बनाने के लिए बायीं ओर database सूची में tables icon पर click करें
दायीं ओर पर tasks सूची में create table in design view पर click करें यह दूसरा window opens करता है
यहाँ field name के नीचे पहले column के रूप में bookid type करें
field type column पर जाने के लिए टैब की का उपयोग करें
क्योंकि bookid प्रत्येक पुस्तक के लिए भिन्न number होगा ड्रापडाउन list से field type के रूप में integer चुनें
नीचे के section में field properties field properties बदलें
autovalue को no से yes में बदलें
यह field अब प्रत्येक पुस्तक को विशिष्ट रूप से पहचानेगा
दूसरे शब्दों में इस field को primary की भी कहते हैं
bookid field की बायीं ओर पीले की symbol पर ध्यान दें
चलिए देखते हैं कि हम field names के लिए field types कैसे चुनते हैं
field types text integer numeric decimal या date हो सकते हैं
text का उपयोग उन fields के लिए करें जिसमें साधारण जानकारी हो उदाहरणस्वरूप name शीर्षक पता
integer numeric decimal का उपयोग उन fields के लिए करें जिसमें केवल numbers शामिल हो सकते हैं
उदाहरणस्वरूप numeric का उपयोग कीमत की जानकारी वाले field के लिए integer का उपयोग वर्ष के लिए करें
अब बाकी fields बनाते हैं
title field type text author
field type text published year
field type integer
publisher
field type text
price
field type numeric
length को 5 और decimal places को 2 में बदलें
format example button पर click करें
यह field format window opens करता है
category list से currency और format list से inr चुनें
rs 123400 चुनें जिसमें दो दशमलव अंक हैं
ध्यान दें कि दो दशमलव अंको सहित पूरी लैन्थ 5 है
ok button पर click करें अब हमने books table के लिए सभी columns button दिये हैं
अब table को सेव करें
save icon पर click करें जो file menu के नीचे है
table name text box में books type करें
ध्यान दें कि यह database library में समान location पर सेव हुआ है चूंकि tables database का हिस्सा हैं
और ok button पर click करें
अगले ट्यूटोरियल में हम बुक्स टेबल में डेटा जोड़ेंगे और मेम्बर्स और booksissuedबुक्स इश्यूड टेबल्स बनायेंगे
हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने निम्न सीखाः
libreoffice base क्या है
base का उपयोग करने के लिए जरूरी चीजें
आप base में क्या कर सकते हैं relational database की मूल बातें
नया database बनाना नया table बनाना
इस क्रम का अगला tutorial tables tables और relationships relationships है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
यह project
इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है